यह एक सरकारी कर्मचारी की ऑफिस लग रही है जिसके ऊपर सफेद कलर की दीवार से लाल कलर के अक्षर में ई.डब्ल्यू.एस. थ्री लिखा हुआ है जहां लोगों की लाइन खड़ी हुई है।

यहां एक जिओ का बोर्ड लगा हुआ हैं उसके अन्दर कई लोग जा रहे है एक आदमी चल के जा रहा हैं।

यह एक नदी या तालाब जैसा लग रहा है जिसके अंदर कई सारी औरतें वो तालाब के अंदर पूजा कर रही है।

अअ एक हाथी दिखाई दे रहा है ये हाथी के ऊपर एक लड़का खड़ा है उसके हाथ में एक बड़ा डंडा लग रहा है।

बैंक के बहार कुछ रहा है ऊपर बैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

एक ने ब्लैक शर्ट पहना है और एक ने ब्लू शर्ट पहना हुआ है और बड़ी-बड़ी मशीनें लगे हुए है।